हेलो गाइस यहाँ पर पेट्रोल टंकी बहुत ही शानदार पेट्रोल टंकी हैं यहाँ पर बहुत बड़ा बड़ा गाड़ी आया हैं गाड़ी आया हैं भरवाने के लिए बाइक आया हैं स्कूटी आया हैं बस आया हैं और बहुत --

बहुत की शानदार मछली है आप देख सकते हो कितना बड़ा-बड़ा मछली है बहुत ही शानदार मछली है आप देख सकते हो एकदम अच्छा मछली है देख सकते है आप कितना अच्छा मछली है बहुत ही शानदार मछली है।

हेलो गाइस यहां पर देख सकते हैं यहां पर मॉल है मॉल में कपड़ा से लेकर सब चीज मिलता है कपड़ा की दुकान है ये और मॉल है मॉल में कपड़ा हर चीज मिलता है आप --

यहाँ पर व्हाइट कलर का केक है यहाँ पर बहुत अत्ता बहुत अच्छा बहुत ही ची अच्छा है केक है यहाँ पर --